बॉइल्ड अंडा और भी फास्ट फूड और फ़ास्ट फ़ूड मिलता है यहाँ पे बाजू मे भी दुकान है। अंडे का और एक साइड साइकिल --